और बहुत सारे डिब्बे में टॉफी बिस्किट वगैरा भी दिखाई दे रही है.

दो बॉक्स लगे हुए हैं एक चेयर भी साइड में--

तीन चार और उसका मशीन भी रखा हुआ है यहां पे.

यह एक रिलायंस कंपनी का पेट्रोल पंप है.

और कुछ पिल्यर मैदान में खड़े होकर डिस्कस कर रहे हैं.

और चार पीलियर एक साइड भी खड़ा होके रेड टी-शर्ट पहने हुए है।

और कुछ घर के ऊपर --

और साइड मे बोहोत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हे.

यह कोई मछली मुर्गे का दुकान दिखाई दे रहा हे.

यह कोई रेडीमेड कपड़े की दुकान की शॉप लग रही है.

रेड कलर का हे ब्लू कलर का हे नीला कलर --

और टाइल्स लगा हुआ है कथ्था कलर का व्हाइट कलर का.

और पंखे भी लगे हुए हैं आठ दस दिखाई दे रहे हैं।

साइड में कुछ फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं जो हले-हरे पिले कलर के दिखाई दे रहे है.

यह एक दुकान दिखाई दे रहा है नाई का-

अ एक बोर्ड है रेड कलर का अविनाश कंपले लिखा हुआ है.

एक रास्ता भी दिखाई दे रहा है दो व्यक्ति चलते हुए बैग टांगे हुए है रेड कलर का.